और यहां वो काल भैरव ढाबा लिखा हुआ है।

और यहां पे बहुत सारे बच्चों को पढ़ने के लिए टेबल और कुर्सियां लगे हुए हैं।

और यहां पे फूलों की लरियों से सजावट हुई है।